और एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसमे ने चोकड़े कलर के टि-शर्ट मह पेहने हुए दिखाई दे रहा है और चश्मा लगाए हुए है।

इस इमेज में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के उपर एक पुल बना हुआ है और नदी के म-म आसपास--

एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने सफेद और उसमें कुछ स्टीकर से बने हुए--

इस इमेज मे मुझे एक एक स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है और उसके बाहर बहुत सारे आदमी की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे तीन आदमी दिखाई दे रहे है जो की लोअर टी-शर्ट पहने हुए है और अपने इत मे हाथ मिलाये लाये हुए है तीन--